और एक अ अ लड़की के हाथ कैमरा दिखाई दे रहा है | मछली से फोटो खींच रहे हैं |

बिल्डिंग में कुछ जालीदार रेलिंग लगी हुई है और --

और साइड में एक बाइक भी खड़ा किया हुआ है और कुछ हरे हरे घासें लगी है बड़ा बड़ा सा पेड़ भी है |

और यहाँ पे साइड में बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं | एक लड़का यहाँ पे दो लड़के जाते हुए दिखाई दे रहे हैं ।

दिखाई दे रहा है निचे टाइल्स लगा है।

यहाँ पर एक शॉप जैसे दिखाई दे रहा है यहाँ पे बहुत सारी बोरियो में कुछ रखा हुआ है बहुत सारी बोरी बोरी रखा हुआ है ।

इसमें हार्ड हार्ड रेड कलर का बना हैं जो काफी अच्छा लग रहा हैं।